यहां पर दीवार पर बहोत सारे बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जहां पर एक दो लोग दिख रहे है।

यहां की दीवारों पर ए_सी भी लगाया गया है।

इस रोड पर लाइन भी बनाया हुआ है जिसका रंग उजला है।

यहां बैलून भी लगाया गया है जिसका अलग अलग रंग है।

उसने नीले कलर की साड़ी पहनी हुई है उसके पास एक माइक भी है।

उसके टेबल पर एक मूर्ति भी रखी गई है उसके पीछे एक और मूर्ति लगाई गई है।

यहा से बहोत सारे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उस पर भारतीय डाक इंडियन पोस्ट भी लिखा हुआ है।

खेत में बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है।

यहां पर एक टेंट भी लगाया गया है जिसका कलर नारंगी और लाल में है।

यहां पर बहुत सारे पंखे भी लगाए गए हैं।

इस पर डेल भी लिखा गया है यहां का सीलिंग का रंग उजला है।

यहां जमीन पर हरे कलर का कारपेट भी बिछा दिख रहा है।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

यहां नीचे एक जनरेटर भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग हरा है।

यहां पर बहोत सारे फूल भी दिख रहे हैं जिनका रंग पीला लाल नारंगी अथवा और भी कलर है।